इस तस्वीर में एक हरा पेड़ दिख रहा है और पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ दिख रहे है एक सफ़ेद इमारत दिख रही है और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिख रहे है।

इस तस्वीर मे एक पीले रंग की इमारत दिख रही है और बाहर की तरफ--

ये तस्वीर किसी हॉटेल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा पर कुछ टेब्लस रखी हुई है और कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है एक लाइट दिखाई --

इस तस्वीर मे आसमान बिजली के तार एक पहाड़ और हरियाली और कुछ पानी जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ चट्टाने--